उसे पुल के नीचे बड़ा सा पानी दिखाई दे रहा है।

इस फोटो पे एक बड़ा सा मंदिर दिखाई दे रहा है।

इस फोटो पर एक बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है।

इस फोटो पे एक बड़ा सा गाड़ी दिखाई दे रहा है।

बहोत सारा इंसान दिखाई दे रहा है।

उस पानी के सामने बहोत सारा इंसान लोग दिखाई दे रहा है।

उस पानी के सामने बहुत सारा पेड़ दिखाई दे रहा है।

इस फोटो पे एक बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है।

आगे में बेरा भी लगाया हुआ वाला दिखाई दे रहा है।

तीन थू जग भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में एक बड़ा सा दुकान दिखाई दे रहा है।

उसके पीछे एक पानी के पुल दिखाई दे रहा है।

उस बाइक के बगल में एक कार भी दिखाई दे रहा है।

बहोत सारा फूल दिखाई दे रहा है।

आईना के सामने में बहोत सारा लाइट दिखाई दे रहा है।

लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

सामने में बहोत सारा घास दिखाई दे रहा है।

उसके पीछे बहोत सारा पेड़ दिखाई दे रहा है।

इस फोटो पे एक छोटा सा रूम दिखाई दे रहा है।

उसके पीछे बहोत सारा सामान राखा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस फोटो पर जे_पी मैकेनिकल वर्कशॉप दुकान दिखाई दे रहा है।

इस फोटो पे एक बड़ा सा मंदिर दिखाई दे रहा है।

और घर के सामने में बेरा लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

बहुत सारा इंसान लोग काम करते हुए दिखाई दे रहा है।

सामने में बहुत सारा इंसान लोग खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

एक ए_सी भी लगाया हुआ दिखाई दे रहा है।